यह एक घर की तस्वीर है।

और काली कलर के पंखा है जो चल रही है।

और गेट के पास एक युवक खड़े हैं दो बाइक लगी हुई है।

काफी कलरलेस है आसमान बिल्कुल साफ है।

जिसमें दुल्हा के बैठने के लिए कुर्सी लगाया गया है सोफा लगाया गया है।

यह पिक्चर एक दुकान की है जिसमें बहुत सारे कलम कलर्स .

सामने में बटरफ्लाई और--

यह एक मॉल की तस्वीर है जिसमें बहुत सारी--

सामने में बल्ब रखा हुआ है।

यह एक एस_बी_आई का ब्रांच का पिक्चर है।

बहुत सारे आदमियों की भीड़ भी लगी हुई है।

अपने अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हैं।

ऊपर में फैन लगी है।

यह कार्यालय बैंक हो सकती है।

कॉलेज हो सकती है या फिर--

जो कि मैदान में बैठे हुए हैं .